चिड़िया-घर के बाहर लोहे की जाली बनाई गयी है जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हैं। ।

यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में एक गेट भी बनाया गया हैं।

यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बाउंड्री बनी हुई हैं बाउंड्री मे एक गेट भी लगाया गया हैं।

पिलर पिंक कलर का बना है मकान के दीवाल में बहुत सारे फोटो को लगाया गया है।